उसके बाद फूलदानी बनाया गया है यह --

यहाँ पे कुछ बड़ा-बड़ा गेट बनाया गया है पास में बहुत सारी सीडियाँ भी है कुछ लोग उतर रहे है कुछ लोग चढ़ रहे है पास में ग्रिल भी दिया गया है एक नदी गयी है नदी में पानी बह रहा है पास में बहुत सारा मंदिर बनाया गया है ।

पार्क का तस्वीर लिया गया है जिसमे बहुत सारे हिरण खाना खा रहे हैं कोई बैठे हैं कोई घूम रहे है।